ये एक पारक है पारक में देखिए काफी सारे छोटे-छोटे पौधे है उधर बाल्टी दिखाई दे रहे है बाल्टी के उधर --

एक्सरसाइज करते हैं ।

और उधर देखिए जो भी सब बोल रहे हैं काफी

पोस्टर्स लगे हुए हैं यहाँ पर पेड़ है नारियल पेड़ है पेड़ बहुत बड़ा-बड़ा है ।

एस.बी.आई. बोलते हैं ए.टी.एम. भी बगल में है ।